एक न्यू शंकर ढाबा फॅमिली रेस्टोरेंट के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है इस तस्वीर में बहुत सारे दो पहियों वाले वाहन भी खड़े हैं।

इस विश्वविध्याल में एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। इस विश्वविद्यालय के दूसरी ओर खाली ग्राउंड सा बना हुआ है। बहोत सारे पेड़ और घास लगी हुई है।

सिंघारो के पत्तों के आभाश हो रहा है। यह सिंघाड़े के पत्तों के नीचे बहुत सारा पानी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर मैनेज्ड बाय डी _ए_वी कॉलेज ट्रस्ट एंड मॅनॅग्मेंट सोसाइटी न्यू देल्ही लिखा हुआ है यह एक बहुत ही सुन्दर बड़ा सा स्कूल दिखाई दे रहा है।

र एक पेट्रोल पंप (Petrol Pump) का दिखाई दे रहा है। इस पेट्रोल पंप(Petrol Pump) के चित्र के बीचो बीच एक टायर रखा है। इस पेट्रोल पंप (Petrol Pump) के पिछली ओर एक घर भी बना हुआ है।

ई रास्ते के एक सामने बड़ी सा टावर दिखाई दे रहा है। जिसके कांच से बने हुए बना हुआ है। कुछ खिड़कीयाँ खुली हुई है बहुत सारे हरे-भरे छोटे-बड़े पेड़ भी लगे हुए है।

एक रेस्टूरेंट की तस्वीर दिखाई दे रही है। इस रेस्टूरेंट में एक आदमी दिखाई दे रहा है। जो टेबल साफ कर रहा है।

इस नदी के चारो ओर बहुत सारे बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

पत्थर बहोत सारे पत्थर दिखाई दे रहे है दो आद्म मी भी दिखाई रहे है आस -पास बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए है।

दूसरी ओर सफेद और संत्री रंग के घर भी बना हुआ है। कम बहुत सारे कमरे भी दिखाई दे रहे है। इस प्लेटफार्म पर बोहोत सारे लोग चलते हुए भी नजर आ रहे है।

नदी के चारो ओर बहुत हरियाली है। इस नदी के एक तरफ जाने का रास्ता भी बना हुआ है।

एक प्लेटफार्म पर रेल पटरी पर कोई ट्रेन नहीं है। कुछ लोग वो रेल पटरी पर स्टेशन पर जा रहे है।

ये पूरा रेस्टुरेन्ट बत्ती से जगमगा रहा हैइसमें बहुत सारे बैलून भी लगे हुए है इस रेस्टुरेन्ट में चेयर आर टेबल बहोत सजावट के साथ रखे हुए है।

सामने की ओर एक चेयर ओर कुछ चिप्स कुरकुरे के पेकेट टंगे हुए हे एक आदमी भी दिखाई दे रहा हे।

पीर पर ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई हो। बोहोत सारे चार पहियो वाले वाहन खङे है पीले रंग की बस भी खड़ी हुई है सफेद रंग की बस भी खड़ी हुई हे।

फूलों की माला लगी हुई है बहोत सारे जूते दिखाई दे रहे है एक बाहर दो जोड़ी चप्पल भी रखा हुआ है जो काला रंग का है।